ये एक भैया है जो कुर्सी पे बैठे हैं जिन्होंने बैंगनी कलर की शर्ट पहन रखी है और पीछे बोहोत सारी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। एक फ्रिज रखी है साइड में और भैया ने चस्मा लगाय हुआ है एक लॉकेट पहन के रखा है लाल कलर के धागे में।

ये एक रेलवे स्टेशन है। जहाँ पे तीन कुत्ते बैठे हुए है। यहाँ पे एक आदमी खड़े होके अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा है बहुत ही बेसब्री से और --

एक तरफ पानी भरा हुआ है। बीच में रोड बना हुआ है और बड़े बड़े पहाड़ भी है जो पीछे दिखाई दे रहे है। एक गुलाबी कलर के कपड़े पहन के एक आंटी भी खड़ी हुई है यहां पर।

दुल्हन की माँग ये भर रहा है या फिर मंगल सूत्र पहना रहा है। पंडित जी बैठ के मंत्र पढ़ रहे हैं। यहाँ पे किसी न किसी की शादी हो रही है।

पीछे एक भैया खड़े है मास्क लगा कर और एक आंटी भी बैठी है जो मछलियों को शाफ साफ कर रही है।

ड्रेसिंग टेबल पर कंघा रखा हुआ है और एक भैया है जो फोन चला रहे हैं। पीछे एक मटका रखा है पानी --

का एरिया है। यहां पे कढ़ाई वगैरह रखी हुई है और यहां पर बहुत सारे वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं।

ये एक मंदिर जैसा है। जहाँ पे एक भैया पानी में का बोतल लिए हुए है हाथ में गले में ईयर बड्स डाले हुए हैं।

ये एक घर है। जिसकी दीवाल दो मिस्त्री खोद रहे हैं छैनी और हथोड़ै की मदद से।